इधर ब्लैक कलर चेयर्स भी दिख रहे हैं व्हाइट कलर फैंस भी दिख रहे हैं।

एक्सरसाइज करने और जंपिंग करने के आयरन से बने हुए इक्विपमेंट्स है।

एक मूवी थिएटर दिख रहा है।

फाइव लाइंस है फाइव लेंस में रेड कलर चेयर्स हुए हैं।

इधर बहुत सारे लाइटिंग भी दिख रहा है इधर एक मिरर है फूलों से सजा हुआ है।

बादल भी दिख रहा है इधर एक आयरन रॉड भी दिख रहा है।

इधर पत्थरों भी दिख रहे है।

इस चित्र में दो बड़े से बिल्डिंग्स दिख रहे हैं।

इधर बहुत सारे लाइटिंग भी दिख रहे हैं।

इधर ब्लू कलर के टब्स भी दिख रहे हैं व्हाइट कलर के लाइट्स भी है।

इधर आसमान भी दिख रहा है।